हार रिंग्स पेंडल्स वो सब है दो--

एक घर में लाइटिंग लगी हुई है।

ये है मैक्स पीच के टाइल्स है येल्लो कलर --

तीन से चार गोट्स है एक कार्बन डाइआक्साइड सिलिन्डर है।

मैदान है पौधे लगे हुए हैं।

एक मैदान है बहोत बड़ा नीचे मट्टीयां है।

एक बड़ी नदी है पत्थर दिखाई दे रहे है।

एक घर भी है ऊपर वायर भी है ।

एक रूम है उधर दो तीन चार बेंच है ।